मुझे इस इमेज में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है लाइट्स दिखाई दे रही है सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

एक घर दिखाई दे रहा है ग्रीन येलो लाइट दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक बस दिखाई दे रही है जो ब्लू व्हाइट कलर की है बस पर फूल ऐ_सी ट्रेवल्स लिखा हुआ है।

मुझे एक चाय स्टोर दिखाई दे रही हैं जिसमें बाल्टी टोस्ट दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस इमेज में कुछ लोग दिखाई दे रहे है नव दिखाई दे रही है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

पानी दिखाई दे रहा है एक लड़के ने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है पत्थर पर बैठा हुआ है कुछ लेडिस दिखाई दे रही है एक लेडिस ने ऑरेंज कलर का सूट --

गोपालगंज शाखा टू कुछ लोग दिखाई दे रहे है कुछ बाइक्स दिखाई दे रही है।